और साइ एक साइड में रेक में साबुन वगेरा सेम्पु वगेरा रखे हुए है।

और अअअ बैंक के बाहर कुछ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पर एक लैब है।

यहाँ ए ए यहाँ पर एक तालाब है लेक व्यू पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है।

और यहाँ पर कुछ शैम्पू वैगेरा रखे है जैल रखा हुआ है।

मिरर लगे है चेयर रख--

अ पौधो की बेल वगेरा लगी हुई है पानी के ऊपर से पत्ते लगे हुए है बहोत सारे

यहाँ पर प्रभु इशू का अ अ म मूर्ति लगी हुई है स्टेचू लगा हुआ है बना हुआ है यहाँ पर

और यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है अ ग्राउंड में--

यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है।

और जिसके बाहर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।

और यहाँ पर ले-लाइट जल रही है कुछ दो चार लोग खड़े हुए है यहाँ पर--

अ कुछ यहाँ पर अ हॉकी स्टिक वगेरा रखी हुई है फ्लॉवर रखे हुए है।

और यहाँ पर ग्राउंड में पेड़ लगे हुए है और कुछ पेड़ लगाए हुए है और अ यहाँ पर कुछ--

और जिसको फुलो से फुलो की मालाओ से सजाया हुआ है।

यहाँ पर एक ग्राउंड है और प्ले ग्राउंड है जिसमे कुछ लोग अ प्ले अ खेल रहे है।

जाली लगी हुई है पक्षी उस साइड है लोहे की जाली के उस साइड है कुछ पेड़ लगे हुए है यहाँ पर--